इस चित्र में मुझे ग्रीन कलर का बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसके ऊपर एयरटेल का बैनर लगा हुआ है ।

और सामने ही स्विच बोर्ड है फोटो फ्रेम में साइड में।

रैक है फर्श मार्बल की हैं।

इसके दीवाल पर पूरे शीशे का वर्क किया गया है साइड में डार्क ब्राउन है।

सामने लाइट वाला पोल है।

पीछे नदी है और नदी के पीछे भी बहुत सारे पेड़ है पहाड़ है।

यहां की फर्श कच्ची है उनपर हरी घास है ।

इस चित्र में मुझे ढेर सारे पब्लिक नजर आ रहे हैं।

हाथ है जिनके अंदर फूल रखे गए हैं।

इस चित्र में मुझे बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं जिनमें से कुछ खड़े हैं कुछ चल रहे हैं और कुछ बैठे हुए भी हैं

सामने ही बेसिन है एक हाथ धोने के लिए और उसके सामने एक रैक --

समाने यहां एक ड्रम हैं और भी अलग अलग तरह के सामान हैं।

बिल्डिंग अभी पलस्तर नहीं है ईंटे वाला है सामने गेट है।

चारों ओर बहौत बड़े बड़े पेड़ हैं।

घासों के बीच कुछ कचरा भी फेंका हुआ है।

ये शॉप एक किराने दुकान का है जहां पर ढेर सारा सामान रखा हुआ है और उसके साथ अंडा है चॉकलेटस के डब्बे हैं।